और ठंडा कोका कोला स्प्राइट फिज ऐसे कई सारे सामान है और एक दुकान है वहां पे शॉपकीपर खड़ा है।

ये कुछ देख रहे है देखने का कोशिश कर रहे है और उन लोगो के सामने एक वाइट बोर्ड टाइप का कुछ लगा हुआ है।

और किसी चीज पर लोजी टेक लिखा हुआ है।

इस चित्र में ग पार्क दर्शाया गया जोकि--

इस चित्र में आपको एक बिल्डिंग दिखाया गया है जोकि वो बिल्डिंग एक दुकान तरह का दिख रहा है।

इस चित्र में बिल्डिंग दर्शाई हैं जो की बिल्डिंग ह अंदर--

और जो यहां देखने से लग रहा है कि एक होटल है और दोनों रूम के बाहर--